एक नदी है नदी देखने में बोहोत सुंदर लग रही है औ बहुत बड़ी भी है। यहाँ पे कुछ लोग नहा के धूप बत्ती भी देखा न्-देखाई रहे हैं।

अ टाफी वगेरा हैं बहोत ज्यादा चोकलेट वगेरा हैं और यहाँ पे कुछ लोग खरीद भी रहे हैं और कुछ लोग बेच भी रहे हैं। यहाँ पे भीड़ बहोत दुकान के आगे लगी हुई है और दुकान के पड़ोस में एक सीढ़ी भी दिखाई मुझे पड़ रही है।

और कुछ लोग खरीद भी रहे हैं। यहाँ बॉल वगैरह भी मिलते हैं और बैट भी मिलता है। कैरम बोर्ड जैसे मिलता है। उस के पड़ोस मे एक क्लिनिक है वहा पर भी कुछ दवाई वगैरह --

और यहाँ पे पोल वगैरा भी बोहोत ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। अ यहाँ पे बोहोत ज्यादा भीड़ भी है। यहाँ पे कुर्सी वगैरा भी बोहोत ज्यादा पड़ी हुई। यहाँ पे बोहोत ज्यादा लोग भी हैं। यहाँ पे जेन्ट्स लेडीज हैं और बच्चे भी बोहोत ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं।

यहां पे चाय वगैरा भी बेची जाती है और यहां पे कवाब-परेठा वगैरा और ब्रेड पकोड़ा वगैरा भी मिलते हैं। यहां पे चाय कॉफी वगैरा भी मिलती है यहां पे ।